जैसा कि आप देख सकते हो यह एक--

पब्लिक जगह है जहां पे हॉस्पिटल्स मेडिकल और यहां पे और भी सारी सर्विस है जो--

और भी पुराने पुराने चीजें दिख रहे हैं जिसे आप--